और उसको चॉक से निशान बना रहे है।

छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए है और कुछ गाड़िया भी खडी हुई है।

और गुरुकृपा भी लिखा हुआ है। यह बस ब्लू और व्हाइट कलर की है।

बहुत सारी लोडिंग रिक्शाये खड़ी हुई है और वह रिक्शास ब्लू कलर कि है।

चौड़ा सा पानी का चबूतरा जैसा नजर आ रहा है पर उसमे पानी नहीं है।

वे सभी लोगो ने जैकेट वगेरे पहने हुए है।

यहाँ एक पार्लर है और यहाँ पर पार्लर में हेयर वोश करने के लिए जो चेअर होती है वो भी है।

और उस आदमी ने ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है उसके हाथ में एक पाइप भी है और उसके बाजू में गाड़िया भी नजर आ रही है।

वह कुर्सिया ब्राउन कलर की है।

गाड़ी का कलर व्हाइट है।

और वहा आय टेन गाडी है वहाँ पर बलुंस भी लगाये हुए है और गाडी के उस तरफ एक लड़का बैठा हुआ है।

यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर तीन मुर्तिया भी लगाई हुई है।

यहाँ पर कुछ लोग खड़े है। जो की घर --

छोटे छोटे पौधे लगाये हुए है।